तरफ मुझे एक फॉक्स नज़र आ रहा है एक भेड़िया नज़र आ रहा है उसके एक और भेड़िया नज़र आ रहा है सामने तरफ बिलिया उम्म जलिया बंद नज़र आ रहा है पिंजरे में बंद नज़र आ रहा है साइड की तरफ मुझे --

सामने झाड़ी सा कुछ सामने दूर की तरफ कुछ छोटे हरे-हरे कलर का पेड़ नज़र आ रहे है कुछ पेड़ बड़े-बड़े भी नज़र आ रहे है पर ये देखो मौसम भी काफी साफ़ नज़र आ रहा है और समुन्दर में कुछ बड़े बादल भी --

बादल नजर आ रहा है बादल काफी बड़ा बड़ा नजर आ रहा है कुछ बादल छोटे छोटे नजर आ रहे है कुछ बादल का अकार काफी अलग नजर आ रहा कुछ बदल का अकार छोटा सा --